पेड़ दिख रहे हैं ऊपर खुला आसमान दिख रहा है नीचे जमीन दिख रही है बहुत सारे पेड़-पौधे लग रहे हैं और एक फुब्बारा दिख रहा है और लाइट दिख रही है।

और एक चार सेट दिख रहा है और एक बंदा है।

रहे हैं एक बोर्ड लगा है उसपे कुछ लिखा हुआ है और कुछ घंटियां दिख रही है कुछ पत्ते दिख रहे हैं|

कुछ लाइट आ रही वो दिख रिया है सामने दीवाल दिख रही है और कुछ डब्बे रखे हुए वो दिख रहे है।